ये घर बहुत ही बड़ा है। घर के अंदर आप जा सकते हो आ सकते हो। के द्वारा बनायी गई है। इधर विशाल होने के कारण बहुत देखने में और ये जो गाड़ी बाहर में बोहत सारी गाड़ियां खड़ी है। इसकी पता चलता है घर यह बोहोत ही बड़ा है जिसका न देखने में बोहोत ही खूबसूरत लगता है।

ये बच्चा फूलों में पानी दे रहा है बोहत अच्छी काम कर रहा है। ताकी फूल अच्छे से वृद्धि हो सके और फूलो में पानी देना बोहत अच्छी बात है ताकि जल्दी बढ़ेगा और ये फूल लाल कलर की है पत्ते भी है हरे-हरे कलर के। ये बच्चा बहुत ही क्यूट है। ये चप्पलें पहने हुए है शर्ट पहने हुए है ।

यह नाव है जो इस पानी में चल रही है। इस नाव में इतने सारे लोग बैठे है। उम्मीद से बाहर। ये डूबते नही है बहुत अच्छी जगह है और यह पानी में घुमने की कोशिश रहे है और इन सभी को घुमाया जा रहा है जा रहा है।

एक ऑफ़िस जैसा लग रहा है। यह रात का समय है जिस कारण कॉल चला गया। दिन भी हो सकती है यहाँ से बाहर दीखता नहीं है जिस कारण मैं नही बता सकता। ये बल्ब जलने के कारण ये बहुत सारे लोग या फिर काम कर बोहत सारे लोग एक कुर्सी पर बैठ के काम कर रहे है कुछ ज़रूरी एव सीरियस है।

यहाँ पर जा कर पेट्रोल ले सकते हो डीजल ले सकते हो। इस पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल ही मिलता है।

उधर आदमी पढ़ा रहा था टेबल पे नहीं बैठना पड़ेगा उसी पे लिख सकते हो जो बहोत अच्छी बात --

ये व्यक्ति बहोत ही प्यार से खड़े हैं। जूते पहने हुए है। ये टाइ पहने हुए टोपी पहने हुए और इनके हाथो में --

सब अच्छे प्रकार से काम कर रहे है। नीचे में बोरा लगाया गया है। ताकि उपर की सारी चीजे़ अच्छे से देखी जा सके है और ये बहुत अच्छी अच्छी चीजे़ हैं। इन कामों में बहुत ही पसंद लगता होगा।